यहाँ एक पहाड़ का गुफा टाइप का बना हुआ है। अंदर में पत मतलब बहुत बड़ा-बड़ा पथर है।

और सूर्य की लाल किरणें --